यहां पर फर्स पर कुछ बच्चे चित्र बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे के तरफ दो चैनल गेट बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं गमले दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर स्कूल में कुछ विद्यार्थी लड़कियां रंगोली बना रही है फर्श पर एक सर जो है रंगोली देख रहे हैं पीछे की तरफ--

यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे बच्चे हैं जो बैठे है फर्श पर बैठे हुए उनकी शिक्षिकाएं दिख रही है नीली रंग की तरफ लाल दीवार है एक बच्ची के साथ गमला ही हुआ है पीछे जालियां है और चैनल गेट है।

यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं फर्श पर बैठे हुउनकी शिक्षिकाएं दिख रही है नीली रंग की तरफ लाल दीवार हैएक बच्ची के साथ गमला ही हुआ हैपीछे जालियां है और चैनल गेट है।

एक बैट भी दिखाई दे रहे है और पास मे एक ओर दुकान भी दिखाई दे रही है अंदर की तरफ बहुत सारी पुस्तके ।

यह लाइटिंग बहुत सजावट बहुत सुंदर दिखाई दे रही कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं इस दृश्य की फोटो खींचते हुए अ कैंडल दिखाई दे रही है जलते हुए।

यहां पर एक प्रोग्राम चल रहा है इसमें सांता क्लास दिख रहा है दो बच्चे दिख रहे हैं और भी बच्चे दिख रहे हैं और भी मैडम दिख रहे हैं पीछे एक सर दिख रहे हैं पीछे माइक में बोलते हुए स्टेज में गुब्बारे--

डिस्को का चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ महिलाएं डिस्को कर रही है सामने की तरफ कुछ पुरुष भी है जो --

अ रोड के आस पास भी कुछ लोग नज़र आ रहे है रोड के आस पास पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

इक कारखाना या मील दिख रही है जिस मैं मजदूर काम कर रहे हैकुछ दो मजदूर अनाज पर बेठे हुए है एक सोया हुआ है कुछ मशीनें है जो चल रही है उपर से।

वाह तीन सेट लगे हुए हैऔर सामने की तरफ सफेद कलर की मशीनों है और सफेद धान भी दिख रहा है।